कैलाश यादव जी जोकि मृतक है उनका फ़ोटो जो है दीवाल पे लगा हुआ है।

यह किसी घाट का दृश्य है जिसमें नदी बह रही है और इस में हरी-हरी घांस है यह दृश्य बहुत ही सुंदर पूर्वक है।

सा यह दिसर हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लाक को दी दर्शा रहा है जो कि बाहर की गार्डनिंग एरिया दिख रहे पार्किंग एरिया दिख रहे --

उधर झुला है। यह पार्क है। बहुत ही सुंदर लग रहा है जोकि हरे भरे पोधे से भरा हुआ है और फ्लोर एरिया काफ़ी सुंदर है।

यह एक चाउमीन की शॉप लग रही है जहाँ पे एक वर्कर चाउमीन को प्रीपेयर करके लोगो को क्या बेच रहे हैं और साथ में चटनी सलाद वगैरह दिख रहे हैं जो कि में है।

उनकी इलाज की जाती है। एक बेड अलग रखा गया है सिंगल और यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधाएँ है और --